आगे का दरवाजा भी अच्छा लग रहा है। मस्जिद भी अच्छा लग रहा है। इधर कुछ कोई दुकान नजर आ रहा है।

चाय पत्ती का बागान लग रहा है जिसमें से हम चाय जो बनाते हैं तो यह पत्ती का बागान है जिसमें हम चाय बनाते हैं चाय में चाय में जो पत्ती जो डालता है उसी का का बागान है और यह काफी हरा-भरा लग रहा है।

डैम है जिसमें से पानी जाता है और उ और उ रोड सड़क सब में पानी भर जाता है।

एक लाइब्रेरी है जहाँ से किताब लेकर पढ़ कर वहाँ वापस जमा कर दिया जाता है यहाँ काफी अच्छे अच्छे किताब है|

यह डूबता हुआ सुरज हैजो कि काफी अच्छा लग रहा हैऔर इसका कलर रेड और आसमानी कलर का हैजो कि बहुत अच्छा लग रहा हैसामने एक एक नहीं बहुत सारे गाछ भी --